में काफी साफ़ सफाई रहती है।

यह मशीन पानी के लिए लगाई जाती है और ये इस मशीन का मुआयना कर रहे है।

यह एक नाव है। इस नाव में ये सफर का लुफ्त उठाते हैं।

इस नाव में तीन व्यक्ति हैं। दो चाबुक चला रहे हैं। इस चाबुक से नाव को आगे पीछे करते है।

यहाँ कंस्ट्रक्शन का काम चालु है मजदूर सीमेंट और रेता मिला रहें है जिस जो चुनाई में काम आएगा।

यह जन्मदिन के लिए सजाया हुआ बोर्ड है। यहाँ जन्मदिन बनाने की खुशी में सजाया गया है। यह खुशी का समय है।